एक ठो घर है उसमें एक बेड है।

इस घ इस घर में कुछ चेयर है एक ठो बैग है।

एगो पुल है उसपर आदमी ने खड़ा हुआ है साइकिल है उसपे खीरा है।

उसको बाहर बड़ा सा जे_सी_बी लगा है उसको बाहर बहुत सारा दुकान हैं।

वो सोल्डिंग कर रहे हैं उसमें एगो मोटर है तार है चेयर है चप्पल है।

एगो किराना दुकान है उसमें चावल है चीनी है।

तारा बगल से दुकान है बगल में साइकिल है।

एगो सीमेंट का दुकान है बहुत बड़ा उसमें छड़ है बहुत बड़ा कंप्यूटर है एक मोटरसाइकिल है।

उस हॉल के अन्दर बहुत सारा पंखा है बहुत सारा बक्शा है उपर बहुत बड़ा एल_सी_डी है लगा--

अंदर एक मूर्ति है कृष्ण जी का आग बुझाने वाला एक गैस है बहुत सारा बिस्किट है।

एक फंक्शन हो रहा है उसमें वो संता क्लॉस आया है बहुत तरह के गुब्बारे है।

कपड़ा है घड़ी है पानी पीने वाला गिलास है।

पिकअप भी है बस भी है बहुत बड़ा एक दुकान है उस तर एक पुलिस खड़ा हुआ है।

बहुत लड़का पेंट कर रहा है फूल बहुत अच्छा-अच्छा पेंटिंग कर रहा है एक टीचर घूम रही है चश्मा लगाकर एक चेयर है।